ये एक सुरप मार्केट है जहा पर देख रहे है एक आदमी हाथ मे ट्रौली लेकर जा रहे है और उसके सामने एक फ्रीज है जिसके अंदर काफी सारे चिप्प पेकेट रखे हुए ह।